और एक तो लड़का बाहर खड़ा हुआ है उसके हाथ में एक पॉलिथीन में कुछ है।

एक तो रेड कलर का--

यहां पर एक बड़ा सा बिल्डिंग है जिसमें लिखा गया है कि यादव कंपलेक्स वेलिफुल रेस्टोरेंट --

बाहर में एक तो स्कूटी है ग्रे कलर का एक बड़ा सा खंभा है उसमें तार गया हुआ है ब्लैक कलर का।

और रथक वो सजाया गया है ट्वॉ ट्वॉ व्हाइट कलर का घोड़े है।

और कैप भी पेहन रखा है और उसका वो बाॅडी दिखा रहा है ग्रे कलर का जींस पैंट पेहन रखा--

वहां पर एक ठो ब्लैक कलर का बाइक रखा हुआ है एक ठो ग्रे कलर का हेल्मेट रखा हुआ है।

गगन का रंग ब्लू व्हाइट दिख रहा है।

आई_एस_सी आई_आई_टी एंड नेन फाउंडेशन कोर्स है एक्वार्ड --

घास लगे हुए एक तो रोड चलने के लिए--

और ऊपर में कपड़ा सूख रहा है।

औ उस दरवाजे में बहुत सारे नीलिया कलर साइन बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है दिख नहीं रहा है।

दिखाई नहीं दे रहा है बहुत कुछ है।

ये दुकान है शायद यहां पर एक टेबल है टेबल के ऊपर एक--

और वाइट कलर का धोती पहन रखी--

ये शायद नेट पार्लर है जहां पर--

बहोत बड़ा-बड़ा पेड़ है चारों तरफ--

मुस्लिम लोगों का मस्जिद है अ उनका झंडा है और इस चक्र में चिन्ह है।

बाउंड्री स्टील ग्रीप का दिया हुआ है उस फोन में ये रात का सीन है।